यहाँ आप देख सकते है बहुत शीशे लगे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते है पेड़-पौधे है छोटे-छोटे गुलदस्ते हैं।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं आम के केले के नीम के पीपल के आम के केले के पीपल के बहुत सुन्दर अच्छा है।

सामने सड़क है ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।

बहोत घने पेड़ लगे हुए है पीपल के।